वहां पे एक गार्ड्स मौजूद हैं और बैरीकेडिंग की गई है।

इस पे कुछ बाइक्स है और एक व्यक्ति इनको धो रहा है।

बाहर में एक धारीदार स्ट्रक्चर बना हुआ है।

यहां पे है है कुछ हरे-हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

एक शॉप दिखाई दे रही है जहां पर कुछ मेज और कुर्सी रखी--

यहां ऑफिस जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें कुर्सियां पड़ी हुई हैं नीले रंग की।

मेज रखी हुई है लंबी सी।

यहां एक कच्ची सी सड़क दिखाई दे रही है जिस पे कुछ पौधे और पेड़ लगे हुए हैं।

एक दरवाजे के पास रखा हुआ है।

ल लाइटिंग दिख रही है और बैरिकेटिंग दिख रही है।

फुल लगावें है और घास का मैदान है।

सीढ़ियों पर जाली लगी हुई है।

बिल्डिंग के अंदर एक महिला दिखाई दे रही है।

यह एक माल है जिसमें से खांचो में सामान रखा हुआ है।

में धूप बत्ती रखी हुई हैं और कुछ मसाले रखे हुए हैं।

यहाँ पे कुछ बच्चे एक गार्डन में खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पे ईसाई धर्म से संबंधित कोई शूट चल रहा है जिसमें ईसा मसीह का चित्र बना हुआ है।

यह कोई हॉल जैसा दिख रहा है जिसमे शीट और के_एफ_सी शॉप्स बनी हुई हैं।

दूर एक और मुर्गा दिखाई दे रहा है जिसके आगे एक कटोरी रखी हुई है।

पेड़ के चारो ओर सर्कुलर घास को हटाया गया--

यहाँ ग्रीन कैफे नाम की कोई दुकान है जिसके बगल में एक बाइक खड़ी हुई है।

कुछ बाइक्स हैं खड़ी हुई हैं अ और पेड़ लगे हुए हैं।